हमारे यहाँ शादी सालगिरह बर्थडे एवं अन्य किसी भी शुभ अवसर पर केक का ऑर्डर लिया जाता है।

एक घर नजर आ रहा है वो ब्लू कलर का है उसपे एक चेयर डली हुई है जो की और वो घर टीन से बना हुआ है।

नीचे आशिलवाद लिखा हुआ है सटल नीले कलर की है दो छड़ दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की और एक डॉग दिखाई दे रहा है।

एक बिल्डिंग है जिस पर महाबीसविद्यालय माधेपुरा लिखा हुआ है ब --

हाँ ना कुछ पेड़ लगे हुए है जो कि नारियल के है।

ये सिनेमा हाल दिखाई दे रहा है उसके ऊपर टू लाईटस नजर आ रहे है और कुछ पतली तर भी नजर आ रही है वहाँ व्हाइट कलर की है और चैर रेड कलर की डाली हुई है कुछ आदमी नजर आ रहे है।

कुछ बैठें हैं कुछ खड़े हुए --

एक रूम दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक चेयर डली है और स्टील की रैलिंग बनी हुई है कुछ खिड़कियाँ हैं।